बहुत बड़े से एरिया में फैला हुआ है।

जाम में फसे कुछ ऑटो ऑटो वाले --

अपने भक्तों के अपने विचार--

ये यहाँ पे कोई नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा हैं।

साथ में एक बत डक फोटो खींचने वाले को भी शक की निगाहों से देख रहा है।

ये ऊपर है बस के ऊपर चढ़ रहे है साथ में --

हस्त कला में कुछ अ दे कुछ --

ये एक गुरुद्वारा में --